बाहर की तरफ दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

बैठने की जगह जैसी दिखाई दे रही है जोकि गोल --

इसमें कई सारे लोग बैठ कर फोटो खीचवा रहे हैं। पीछे --

पत्तागोभी उगाये गए हैं। कई सारे पत्तागोभी जमीन पर लगे हुए हैं।